ये पिक्चर में एक जमीन हैं जमीन से थोड़ी दूर व्हाइट कलर की --

यह पिक्चर एक ओटो के शोरुम के बाहर का है।

इस घर के सामने बहुत सारे झंडे और चिम्किमो से डेकोरेशन की गई है।

थोड़ी ही दूर में बहुत सारे पहाड़ भी है।